कोने कोने में छोटे छोटे घासे उगे गए हैं।

और उसपर घास उगी हुई है ग्रीन कलर की।

एक आदमी है क्योंकि ब्लैक कलर की ड्रेस पहने हैं।

इसके नीचे का कलर क्रीम कलर का है।

बाहर वाली स्कूटीयां रखी हुई है।

जिसमें बीच साइड रेल की पटरी बनी हुई है।

साइडो पर जमीनों पर फर्श बिछे हुए है।

ये एक मेट्रो स्टेशन है।

उसके अंदर किताबें कॉपीयां बहोत सारी रखी हुई हैं।

जिसकी दीवार पर बड़ा सा घंटल बना हुआ है डिजाइन दार।

और बहोत सारे ग्रीन कलर के पेड़ है बड़े-बड़े --

इसके अंदर पन्ने की चढ़ी है।

जिसके सामने एक अलमारी रखी है।

एक बैनर लगा है पीछे बैंक ऑफ इंडिया का।

ये एक मेट्रो स्टेशन है।

इसकी चोंच रेड कलर की है और आंखे ब्लैक --

सामने बच्चे हैं जमीन पर बैठे।

ये एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है।

सामने एक बहुत बड़ी सी दुकान है।

जमीनों पर पत्थर बिछे हुए हैं।

सामने सीढ़ियां हैं लोहे की रेलिंग्स लगी --

अंदर वल बहुत सारी मूर्तियां रखी हुईं हैं।